और यहाँ एक ग्रीन कलर का डस्टबिन दिख रहा है कुछ लोग खड़े है और गाड़िया दिख --

और छोटे छोटे पौधे भी यहाँपर दिखाई दे रहे है पीछे की और यहापे पहाड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर घास दिखाई दे रही है जो की हरे रंग की है और यहाँ पे कुछ पत्तिया भी दिखाई दे रही है जो --

ये हरे रंग की है आसपास पेड़ दिख रहे है बड़े बड़े जो ह भी हरे रंग के है और यहाँ से आसमान दिख रहा है।

हरी हरी घासे और पोड पौधे दिख रहे है जोकि हरे रंग के है और कई लाइटे भी यहापर दिखाई दे रही है।

यहापर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने की काली कलर की जीन्स सफ़ेद शर्ट और नीली रंग की की जैकेट पहनी हुई है।